हो चुकी है आसमान में अंधेरा छा चुका है सामने की तरफ एक बहुत बड़ा गेट नजर आ रहा है।

बोहत ही बड़ा वाटर पार्क है इसके अ अंदर एक बड़ा सा पुल बना हुवा है। इस पुल के अन्दर बोहत सारे लोग मजे कर रहे हैं।

छोटी सी टेबल है इस टेबल के ऊपर अ बोहत सारा सामान रखा हुवा है। पीछे की तरफ दीवार की ऊपर सफ़ेद कलर का पेन्ट किया गया है।

और भी बोहुत सी चीजे लिखी हुईं हैं। एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ मे सफ़ेद कलर का कपडा है उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए हैं। एक पंखा नजर आ रहा है। स्विच बोर्डस लगे हुए --